बहुत बड़ा गेट है इसमें स्कूल का पूरा सेटअप दिया हुआ है।

रोड है बोहोत सारे लोग जा रहे है कुछ गाड़िया है। यहाँ आसमान दिख रहा है।

एक क्लिनिक हैं बसीकली इसमें बहुत सारे गेट हैंगे।